ये चित्र एक सड़क का है जिसके बाजू बहोत ही प्यारे और खूबसूरत पेड़ और पौधे हैं जिनका रंग हरा है।